एक तालाब है जिस तालाब में पानी भरा हुआ है और--

और अगल-बगल भी हरे पेड़ पौधे है और हरा घाँस जमा है।

कुछ लोग खड़े हुए है और एक बोर्ड लगा हुआ है अगल-बगल हरे पेड़ पौ --

उसके सामने कुछ गाड़ियाँ खड़ी हुई है बाल्टी रखी हुई है और एक मैदान भी है।

सब पत्तियां है और उसमे और अअअ जी अ वेलकम लिखा हुआ है हरा पेड़ पौधा भी हैं।

अगल-बगल हरे पेड़ पौधे भी हैं ।

एक रास्ता है जो रास्ते के अगल-बगल बिल्डिंग है एक बिल्डिंग पट रही है और एक कार खड़ी हुई है ऑटो खड़ी हुई है कुछ गाड़ियां खड़ी हुई है और हरे पेड़-पौधे है ।